और रेल की पटरी लगी हुई है और साइडो में पेड़-पौधे लगे हुए है छोटे-छोटे और एक रूम भी बना हुआ है जो कि क्रीम कलर का है।

काफी सारे छोटे छोटे पेड़ लगे हुए है गे और रात हो चुकी है गी लाईट लगी है गी गाडी में।